एक दीवार के पास एक हरा बोर्ड लगा है।

बिजली का खंबा और लाइट है।

इस तस्वीर में जमीन में टाइल्स लगे हैं।

और एक पानी की बोतल रखी है।

लाइट चल रही है।

तस्वीर में हरे हरी घास--

बीच में जगह है आदमी खड़े हैं।

तस्वीर में सामान जमा है।

तस्वीर में टेबल है और सफेद रंग की प्लेटें हैं।

और शाही दरबार लिखा है।

महिलाएं है और आदमी भी हैं।

सफेद आसमान है।

इस तस्वीर के अंदर हमें टॉप एंड टाउन का बोर्ड लगा दिख रहा है।

और हमें एक शटर लगा दिखाई दे रहा है लाल रंग का।

और खिड़कियां बनी दिखाई दे रही हैं।

बड़ा सा एक जानवर बना हुआ है।

इस तस्वीर मेंएक मस्जिद दिख रही है।

दो आदमी बैठे हैं एक आदमी खड़ा है।

मूर्तियां ऊपर बनी हुई दिख रही है।

इस तस्वीर मेंलोहे की एक रेलिंग लगी है।

इस तस्वीर में कारें खड़ी हैं।

तस्वीर में पत्थर दिख रहे हैं।

और पोस्टर लगे हैं।

तस्वीर में एक आदमी खड़ा है।

अंदर हरे-हरे पेड़ लगे हैं।

इस तस्वीर में कुर्सियां लगी है।

तस्वीर मेंलोग दिख रहे हैं।

एक लड़काबाइक पर बैठा है।

और हमें ऊपर सफेद आसमान--

हमें जमीन में टाइल्स दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारेअ अ--